meet the gimp के tutorial में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
इस image के साथ आज के tutorial को शुरू करते हैं
आज मैं एक image को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए केवल इसी पर कार्य करूँगा
इस selection पर कार्य करना शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वास्तव में ये selection क्या हैं
यह वर्ग एक selection है और यह भाग selection से बाहर है
यहाँ प्रदर्शित ये गतिशील लाइनें इस selection के border हैं
gimp लोग एक selection को एक channel के रूप में जानते हैं
लाल हरा या नीला जैसा एक channel या एक alpha channel जो transparency को नियंत्रित करता है
इस selection के बाहर इस channel की value शून्य है
और सिलेक्शन के अंदर इसकी values 255 है और इन दोनों values के बीच में border है और उनके बीच मान 255 से कम और शून्य से अधिक हो सकता है
अतः एक selection को बदलना या एक selection बनाना कुछ संख्याओं को बदलना है
और अब इस पर एक नजर डालते हैं कि एक selection कैसे बनाते हैं
एक selection को deselecting करने के दो तरीके हैं
पहला तरीका है select पर जाएँ और none none चुनें
आप shift + ctrl + a कीज़ दबाकर भी एक selection को डीselection कर सकते हैं
अब select करें rectangle rectangle select tool और विकल्प dialog में देखें
सबसे ऊपर चार विकल्प होते हैं
प्रथम विकल्प replace the current selection है
अतः मैं यहाँ विभिन्न क्षेत्रों को select करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एक नया क्षेत्र select करता हूँ पुराना selection डिलीट हो जाता है
दूसरा विकल्प add to the current selection है
इस विकल्प को select करके मैं एक image में विभिन्न क्षेत्रों को select कर सकता हूँ और एक काफी जटिल selection प्राप्त कर सकता हूँ
और यदि मैं my colour tabs पर जाता हूँ और selection के ऊपर रंग खींचता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सभी चयनित क्षेत्र उस रंग से भर जाते हैं और वह क्षेत्र जो चयनित होता है और connected नहीं होता है भी भर जाता है
इस प्रकार एक selection में कुछ जोड़ने में प्रत्येक selection को एक के रूप में माना जाता है भले ही इस selection के भागों के बीच कोई connection नहीं है
यह थोड़ा कठिन है
filling को अनडू करने के लिए ctrl + z दबाएँ और प्रत्येक चीज़ को deselect करने के लिए shift + ctrl + a दबाएँ और my options dialog पर वापस आयें
अब यहाँ एक वर्ग का चयन करते हैं और substract from the current selection चुनें
इस क्षेत्र का चयन करें किन्तु कुछ नहीं होता है
किन्तु जब मैं इन क्षेत्रों का चयन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किनारे cut जाते हैं
आप देख सकते हैं कि selection का frame वहां बना रहता है और जब मैं इसे चलाता you तो परिवर्तन हो सकते हैं
अतः आपके द्वारा किया गया अंतिम selection तब तक बदल सकता है जब तक आप एक नया selection प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान में click नहीं करते हैं आप हर समय अपने कार्य को बदल सकते हैं
अब अंतिम विकल्प intersect with the current selection है
इसका प्रयोग करके देखते हैं
मैं यहाँ rectangle select करता हूँ और इसके बाहर का क्षेत्र select नहीं होता है और इससे पहले किये गए selections डिलीट हो जाते हैं
और इस rectangle का एकमात्र selection रखा गया है
मैं तब तक इस rectangle में संशोधन भी कर सकता हूँ जब तक मैं उस क्षेत्र को selected नहीं कर लेता जिसे मैं सलेक्ट करना चाहता हूँ
अतः add हमने चार modes यानी replace add सब्स्ट्रैक्ट और intersect को कवर किया है
आप सिर्फ क्लिक करने के द्वारा एक selection को बदल सकते हैं
ऐड click और shift दबाकर किया जा सकता है
अतः इसे करके देखते हैं मैं shift की key दबाता हूँ और फिर क्लिक करके मैं नए selections जोड़ना शुरू करता हूँ
और जब मैं shift की key और mouse की key दबाता हूँ तो एक plus का निशान प्रदर्शित होता है
अब यदि मैं selection को घटाना चाहता हूँ मैं ctrl की key दबा सकता हूँ और अब मैं mouse की key दबाता हूँ और चलाना शुरू करता हूँ तब आप एक माइनस चिन्ह देख सकते हैं
अतः अब मैं उस selection को सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ
और प्रतिच्छेदन के लिए shift ctrl को एक साथ दबाया जाना चाहिए और फिर intersection करने के लिए एक क्षेत्र का चयन किया जाना चाहिए
यदि आप इन की key combinations को याद करते हैं तो आप अपेक्षाकृत अधिक तेजी से क्षेत्र का चयन कर सकते हैं
और वही की key दूसरे selection tool द्वारा प्रयोग की जाती है
अतः आपको सिर्फ एक बार उनके बारे में सीखना होगा
shift ctrl a सभी selections को अक्षम करता है और वापस सामान्य mode में लाता है और अब यहाँ दूसरी सामग्री के साथ शुरू करते हैं
अगला विकल्प feather edges है और जब मैं इसका चयन करता हूँ तो आपको यहाँ radius count के रूप में दूसरा विकल्प प्राप्त होता है
अतः मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ और एक क्षेत्र का चयन करता हूँ
अब यहाँ आप एक गोलाकार कोना देख सकते हैं
मैं यहाँ गोलाकार कोने नहीं रखना चाहता हूँ
सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है मैं इसे काले रंग से भर देती है और image पर zoom करता हूँ
आप यहाँ मध्य में काला रंग देख सकते हैं और यह किनारों के नजदीक हल्का होता जाता है और ये margin किनारे वास्तविक काले और मूल image के बीच चलते रहते हैं और यहाँ selection की value 128 है
अतः काले रंग के fades का आधा भाग selection के अंदर होता है और आधा बाहर रहता है
margin किनारे आपके selection के एकमात्र वास्तविक किनारे हैं जब आपने एक hard selection किया है
feather edges आसान selections प्राप्त करने के लिए एक अच्छा विकल्प है
feather selection के साथ आप एक कम sharp दृश्य प्राप्त कर सकते हैं और यह उस तरीके से आसान है
तकनीक का ज्ञान रखने वाले लोग feather selection को gaussian blur के नाम से जानते हैं और यहाँ मेरे द्वारा चयन की गई radius gaussian blur की radius है
अगला विकल्प rounded corners है
यह rounded corners से युक्त एक rectangle है और आप rounded corners की radius set कर सकते हैं
यहाँ round भाग प्रदर्शित किया गया है और ये margins सीधे भाग हैं
यहाँ अगला विकल्प antialiasing है
यह विकल्प कोनों की painting को sets करता है
मैं अभी इस selection को काले रंग से भरता हूँ और अब मैं my selection tool पर वापस जाता हूँ और मैं antialiasing को deselect करता हूँ और दूसरा selection करता हूँ और इसे भी काले रंग से भरता हूँ
अतः zoom tool select करें और shift + ctrl + a दबाकर सभी selections को deselect करें और इस क्षेत्र में zoom करें
और यहाँ antialiasing रहित किनारे हैं और इसे या तो काले रंग से भरा गया है या काले रंग से नहीं भरा गया है
और यहाँ आप grays सीढ़ी देख सकते हैं
यहाँ आप jaggis रहित smooth कोने देख सकते हैं और इसे antialiasing कहा जाता है
इस selection में गोलाकार कोने नहीं है बल्कि steps की श्रृंखला है
और जब मैं 100% zoom पर वापस जाता हूँ तो मुझे यहाँ jaggies दिखाई देते हैं और यह smooth नहीं है बल्कि यहाँ इसके कोने smooth हैं और आप आसानी से स्वयं इसका अभ्यास कर सकते हैं
अतः यदि आप smooth कोने पाना चाहते हैं तो antialiasing select करें
और यदि आप यहाँ इन gray रंग की tones को बनाए रखना चाहते हैं तो उस विकल्प को डीdeselect करते हैं
अतः मैं उस विकल्प का चयन करता हूँ और उसमें expand from centre नामक एक उपविकल्प है
मैं इसका चयन करता हूँ और इसके साथ कार्य करना शुरू करता हूँ
अतः मैं यहाँ एक बिंदु रखता हूँ और मैं यहाँ से अपने selection को खींचना शुरू करता हूँ
आप इसे उस बिंदु से बढ़ते हुए देख सकते हैं और यह बिंदु हमेशा उस selection के मध्य में होता है
जब मैं उस विकल्प को deselect करता हूँ मैं selection को यहाँ खींच सकता हूँ और कोनों की स्थिति मेरे selection के अनुसार बदलती है
यहाँ इसके लिए की key code दिया गया है
जब मैं इस बिंदु पर click करता हूँ और ctrl दबाता हूँ मुझे केंद्र से एक selection प्राप्त होता है और selection केंद्र से बढ़ता है
और जब मैं ctrl की key को छोड़ देता हूँ तो selection गायब हो जाता है
जब मैं mouse button दबाने से पहले ctrl की key दबाता हूँ मैं एक selection को सब्स्ट्रैक्ट सकता हूँ किन्तु जब मैं mouse की key और उसके बाद ctrl की key दबाता हूँ मैं centre से selection प्राप्त कर सकता हूँ
यहाँ अगला विकल्प fixed aspect ratio fixed aspect ratio है और यहाँ मेरे पास 1 by 1 के रूप में पूर्वनिर्धारित aspect ratio है और जब मैं इसे खींचता हूँ तो यह हमेशा एक वर्ग होगा
मैं यहाँ 2 by 3 चुनता हूँ और मुझे हमेशा 2 by 3 के अनुपात में एक selection प्राप्त होता है और इसे 3 by 2 के अनुपात में स्विच करने के द्वारा मुझे landscape mode में एक selection प्राप्त होता है
यहाँ एक पूर्ण वर्ग बनाने का एक और तरीका दिया गया है
मैं इस बिंदु पर selection शुरू करता हूँ और खींचता हूँ और फिर shift दबाता हूँ
अब यहाँ पूर्वनिर्धारित value के साथ fixed aspect ratio का चयन किया जाता है
और यह एक तेज तरीका है अतः मैं वांछित aspect ratios वाले क्षेत्रों का चयन कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ और सिर्फ shift दबाकर
अगला विकल्प highlight है और जब मैं उसका प्रयोग करता हूँ वह क्षेत्र जो चयनित नहीं है gray होता है और वह पूरा क्षेत्र जो चयनित नहीं है सफ़ेद होता है
और यह केवल मौजूदा selection से संबंधित है अतः इसे deselect करते हैं और अन्य विकल्पों को देखते हैं
यहाँ आप ये मान set कर सकते हैं और यदि आप यहाँ fix पर click करते हैं तो मैं selection के आकार को नहीं बदल सकता हूँ
किन्तु यदि मैं चौड़ाई को दो pixels कम और ऊँचाई एक pixels अधिक रखना चाहता हूँ तो यह selection को fine tunes करता है
मैं x की value को बढ़ाकर selection को दायीं ओर थोड़ा खिसका सकता हूँ जो मूल बिंदु है
और जब मैं fix पर click करता हूँ तो मैं पूरे selection को चला सकता हूँ
अतः x और x values बाएं शीर्ष बिंदु के उत्पत्ति बिंदु है और fix button के साथ मैं गति को block कर सकता हूँ
अगला विकल्प guides है
मैं एक centre line का चयन करता हूँ जो मुझे यह दिखाता है कि इस selection का मध्य बिंदु कहाँ है
मेरे पास rule of thirds rule of thirds हो सकते हैं जिसे graphic कार्य के लिए प्रयोग किया गया है या मेरे पास golden sections हो सकता है जो rule of thirds rule of thirds के समान है
तली पर auto shrink selection और shrink merged दिया गया है
auto shrink selection बहुत उपयोगी नहीं है
किन्तु shrink merged एक विकल्प है जिसका मैं चयन करता हूँ यह algorithm सभी लेयरों पर दिखाई देता है और यदि केवल वह layer deselected होती है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं को ध्यान में रखा जाता है
इन विकल्पों की पुनरावृत्ति करने से पहले हम ellipse selection के बारे में बात करेंगे
अतः shift + ctrl + a दबाकर सभी selections को deselect करें
शीर्ष पर आपको समान विकल्प मिलते हैं जैसे replace current selection add to the selection with shift key क्लिक करने से पहले और substract with ctrl key क्लिक करने से पहले और intersect with shift और ctrl key क्लिक करने से पहले
smooth किनारों के लिए पुनः antialiasing किया जाता है
ellipse के साथ फिर rectangles के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ellipse हमेशा गोल होते हैं
feather edges उसी तरह का विकल्प है जैसा rectangle में होता है
जब मैं इसे काले रंग से भरता हूँ आप काले और सफ़ेद रंग के बीच का एक smooth gradient देख सकते हैं और ये margin सिरे काले और सफ़ेद रंग के बीच में होते हैं
expand from centre भी mouse button क्लिक करने के बाद ctrl की key दबाने के समान ही ctrl करता है
fixed aspect ratio भी समान रहता है mouse button क्लिक करने के बाद आपको 1 by 1 के aspect ratio वाला एक पूर्ण वृत्त प्राप्त होता है
अब अंतिम tool पर आते हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ और यह free select tool है
जब मैं उस tool को select करता हूँ मुझे यहाँ भी वही विकल्प दिखाई देते हैं और इसकी कीज़ भी add replace substract और intersect के लिए समान रूप से कार्य करती हैं
इसके केवल दो और विकल्प होते हैं यानी antialiasing और समान functions के साथ feather edges
यहाँ मुझे वृत्त की radius प्राप्त होती है और मैं अब इसे deselect करता हूँ
मैं उदाहरण के रूप में आपको दिखाने के लिए पत्ती के इस निचले भाग को select करता हूँ
और मैं इस image में click करता हूँ जहाँ से मैं selection शुरू करना चाहता हूँ और एक line खींचता हूँ और पत्ती के किनारों के आसपास खींचता हूँ
अतः अब मैंने इस क्षेत्र को selected कर लिया है
मैं fine tuning करने के लिए image में zoom करता हूँ
और my selection dialog में मैं add to the current selection का चयन करता हूँ और इस selection को समायोजित करना शुरू करता हूँ
algorithm उस बिंदु के लिए सबसे छोटे मार्ग का पता लगाता है जहाँ से आपने selection करना शुरू किया था
selection को सरल बनाने के लिए मैं एक quick mask का प्रयोग कर सकता हूँ
निचले बाएं कोने पर विकल्प toggle quick mask है और मैं उसे toggle करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पूरी image लाल हो जाती है
यह थोड़ा भ्रामक विकल्प है क्योंकि वह क्षेत्र जिसे हमने selected किया है और वह क्षेत्र जिसे selected नहीं किया है लाल रंग में प्रदर्शित होता है
अतः मैं toggle पर जाता हूँ और इस पर राईट क्लिक करने पर मुझे configure colour और opacity के विकल्प प्राप्त होते हैं और यहाँ मैं एक color set कर सकता हूँ अतः मैं इसे नीला set करता हूँ
अब वह क्षेत्र जो selected किया गया है लाल हो जाता है और पूरा क्षेत्र नीला हो जाता है
और अब मैं एक pen select करता हूँ और selected क्षेत्र को pen करना शुरू करता हूँ किन्तु उससे पहले मैं की key x का प्रयोग करके foreground और background रंग को बदलता हूँ
और अब मैं paint करना शुरू करता हूँ
और जब मैं border paint कर लेता हूँ मैं background रंग के साथ paint कर सकता हूँ
painting के लिए मुझे सही आकार का brush select करना चाहिए
और जब मैं mask को अनटॉगल करता हूँ तो आप यहाँ चयन में गलती देख सकते हैं और यहाँ भी
अतः मैं toggle को select करता हूँ और गलतियों को सुधारता हूँ
सुधारा गया
अतः quick mask एक जटिल चयन को सही ढंग से करने का एक आसान तरीका है
आप quick mass selection को एक tool के रूप में प्रयोग कर सकते हैं
आप mask की opacity को बदल सकते हैं और आप कठिनाई से उन भागों को देख सकते हैं जिन्हें selected नहीं किया गया है
अधिकांश मामलों में 50% opacity सही मात्रा है
आप unselected क्षेत्रों के लिए अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं
यहाँ एक और विकल्प दिया गया है जिसे mask selected areas कहा जाता है
इसका प्रभाव बिलकुल quick mask के विपरीत होता है
अतः अब selected क्षेत्र को नीले रंग से painted किया जाता है और यहाँ यह इस स्थिति में बेहतर दिखाई देता है
और जब आप quick mask को deselect करते हैं आप अपना selection देख सकते हैं
अतः अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ एक perfect selection बना लिया है और मैं selection को अगली बार कार्य करने के लिए so करना चाहता हूँ और इसे खोना नहीं चाहता हूँ
select पर जाएँ और save to channels पर क्योंकि selections मूल रूप से channel हैं
मैं इसे mask1 1 के रूप में सेव करता हूँ और इसे xcf फ़ाइल के साथ stored किया जाएगा
अतः अब मैं shift + ctrl + a दबाकर so कुछ deselect कर सकता हूँ
दूसरे भाग को select करें और जब मैं my selection पर वापस जाता हूँ तो यहाँ मैं selection में कुछ add कर सकता हूँ या selection से कुछ सब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या selection को intersect भी कर सकता हूँ और मेरा selection वापस यहाँ प्राप्त हो जाता है
अतः यदि आप उसे so करना चाहते हैं तो सिर्फ select पर जाएँ और save to channels पर
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद